बिल्डिंगे बनी हुई है और दीवार बनी हुई है दीवार के आगे आदमी है।

छोटे छोटे पौधे उगे हुए है बाहर साइड दो औरतें खड़ी है औरते के सर के ऊपर कुछ भार है।

इस रूम के अंदर बहोत सारी ब्लैक कलर की रिंग पड़ी है गाड़ियों के टायर पड़े हैं और ऊपर पंख लगे हुए हैं इधर गोल साइज का --

इधर कुछ पिलर बने हुए हैं उसके ऊपर तरह तरह का कलर किया हुआ है और ऊपर डिजाइन बनी हुई है।

यहां पर बेंच लगी हुई है बेचों के ऊपर आदमी कोई छोटे-छोटे बच्चे बैठे हुए हैं अपना-अपना काम कर रहे हैं।

बाहर के साइड एक कार खड़ी है जो की ब्लैक कलर की है।

इस पटरी के ऊपर ये पटरी लोहे से बनी हुई है।

यहां पर सामने एक बुक स्टोर दिखाई दे रहा है इस दुकान के अंदर बहोत सारी किताबें पड़ी है।

लोहे के दरवाजे लगे हुए हैं ऊपर चद्दरें लगे हुए लोहे के।

और यहां पर सामने जो घर बने हुए हैं उसे घरों के आगे छपरा बना हुआ है यह बहुत सारी लकड़ियां पड़ी हैं छोटे-छोटे कंकड़ पत्थर पड़े हैं।